छत भी ढलाई हो रहा है और ये बहुत सारे मेंबर काम कर रहे है नीचे मजदूर मिस्त्री और ये अपने-अपने काम कर रहे है और--

बहुत ही सूंदर दिखने में लग रहा है बहुत ही अच्छे-अच्छे पत्थर साइड में रखे हुए है।

पेड़ भी दिख रहा है और सामने देखिये बहुत बड़ा पेड़ और ये मकान का जो बनाया गया है बहुत ही सुन्दर और--